यख मा जी एक हरयूं भरयूं मैदान छा जखमा जी एक पिच कर छा बणाईं।

यख मा जी कई सारा लोग छन एक आदमी छ यखम एक बैरवान छ बैरवान का गोदी मा जी एक बच्चा छ बैग छ ।